बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने।

टी_एस_ए_आई_ थाई नामक कोई जगह है।

थोडे बहुत ग्रीन दिख रहें बाकी ब्लैक --

और गेट का जो खोलने वाला होता है वह गोलचक्रा--

यह सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहीं हैं जैसे कोई--

ये टूटा फूटा समान दिख रहा है और मिट्टी भी पड़ी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसमान बिल्कुल साफ है।

और सामने ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--

एक कोने पर एक लड़का उसके आगे लड़की और एक बोट के अंदर ही ये एक छत बनाई गई है जिसके नीचे--

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है व्हाइट एंड ग्रे कलर की गाड़ियां भी है तो ऊपर बोर्ड --

यहां पर एक क्रेन दिखाई गई है जिसमें दो कुंदे लगे हुए हैं।

और घोड़ा आसमान को छू रहा है।

और यह कोई ज्वेलर्स की दुकान दिख रही है जिसके अंदर हार बहुत सारे वगैरह--

और नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछा रखा है।

यह एक शॉप है जो कि मोबाइल की है।

और कुछ लेडिस और एक बच्ची आई हुई है खरीदने के लिए बच्ची गौर से खिलौनो को देख रही है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह कोई बस स्टैंड हो लेकिन बस स्टैंड नहीं है ये --

कुछ पार्किंग के लोगो भी लगा रखे हैं। यहां पे कुछ पिलर भी लगे हैं जिनके ऊपर येलो पट्टी।

और ऊपर की तरफ एक पंखा लाइट ।

ये घास के घास दिख रहा है दूसरी तरफ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।